एक नंबर है और जी एक दो की तो वाइफ हैया है यह ऊपर जे फूल लगे है ये लटक रहा है ऊपर हू और जे चष्मा लगा है। --

कवाये जन सुतरा ओदे मारी जाए जो दरवाजा ओ लगवा हो जी जे फूल लगे और दो फोटो उनकी डिग्री टंगी हैं।

जी च पांच जन चर्च की फोटो में है चर्च को ऑफसन जो है चर्च की फोटो वा है गद्दा पे खड़े है ये चर्च पे --

क्रिकेट खेल रहे हैं तिन जने इ एक ज ने बॉल पकड़ा एक जन ने बेट फेख रहे हे बेट पकडे हैं ऐसा लग रही हैं।